एक टीचर सभी बच्चों को पढ़ रहा है ध्यान से और यहां पर जैसे कि हम सब जानते कि पढ़ना लिखना हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है पर यहां पर कुछ बच्चे फोन चला रहे हैं।

प्ले लाइन बनी हुई है दौड़ने के लिए और यह काफी साफ मैदान है जहां पे बच्चे दौड़ेंगे और जीतेंगे।

यहां पे बड़ी सी समुन्द्र भी है जो पेड़ पौधो से किनारे मे ढकी है और एक व्यक्ति साइकेल चलते हुए जा रहे या रोड साइड की फोटो हे।

एक दूसरे को रंग लगा रहे हेयहाँ पे पूरी जागा रंग रंग से भर गई हे यह बहुत ही अच्छा त्यौहार हैबहुत ही म- मस्ती करने वाला त्योहार हे।

जसा की हम सब जानते हे की भारत एक मात्र देश हे जाहापे-ए--

यह बोहोत बड़ी है और आसपासमे कुछ पेड़ और गड़िया भी नजर आरही।